एक रास्ता दिखाई दे रहा हैं। बाजु में कुछ घर दिखाई दे रहे है। जिसके अंदर बोहोत सारी साइकिलें दिखाई दे रही है। खम्भा दिखाई दे रहा है।

एक रेलिंग दिखाई दे रही हैं जो कि तार से बनी हुई है।

हरी-भरी घांस दिखाई दे रही हैं। मैदान दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं। खम्भे भी दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है।

दुकानों पे बोर्ड लगे हुए हैं। पी ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं। कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। खजूर के पेड़ भी नजर आ रहा हैं। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ झोपड़िया भी दिखाई दे रही हैं।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

यह एक हाल दिखाई दे रहा है जो की बहुत सजा हुआ है लाल कलर की पीछे पुताई हुई है ।

एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के दोनों तरफ मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी घास लगी हुई है हरि और सामने कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं जो की पीले और लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं।

और सफेद कलर की दिवार दिखाई दे रही है पीछे कुछ रोशनी नजर आ रही है आकाश नजर आ रहा है पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे है तार नजर आ रहे हैं ।

यहां एक झील दिखाई दे रही है। जिनके चारों तरफ कुछ बस्ती भी दिखाई दे रही है।

यहाँ कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि क्रीम कलर की है और लाल कलर की पट्टियां बंधी हुई है।

कुछ लोग नजर आ रहे एक घर भी दिखाई दे रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा है और ऊपर बहुज सारे तार नज़र आ रहे है बोर्ड दिखाई दे रहे।

दूर एक जमीन भी दिखाई दे रही है। कुछ छोटे-बड़े पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

बाहर रैलिंग दिखाई दे रहा है जो कि स्टील की है मंदिर का कलर ऑरेंज सफेद कलर इत्यादि का दिखाई दे रहा है।